यहां घर बन रहा है यहां बहोत सारे मजदूर हैं यहां टेबिल और कॉफी वगैरा रखी हुई है।

और यहां बहुत चेयर रखी हुई हैं और--

ये एक गार्डन है गार्डन में बहोत अच्छा लग रहा है पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां--

ये एक पार्लर है पार्लर में ए_सी लगी हुई है और--

बिदाई हो रही है और यहां बहोत सारी बच्चिया दिखाई दें दे रही है। बहोत सारे गिफ्ट भी लिए हुए हैं।

ये पटली वो है रेल की और यहां बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और एक बहोत एक बहोत बड़ी टंकी--

सब्जी की दुकान है सब्जी में बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है और चार लोग भी यहां दिखाई दे रहे हैं।

इधर शादी हो रही है दूल्हा और दुल्हन खड़े हुए हैं बहुत पीछे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

ये एक झरना है झरने में तीन लोग नहा रहे हैं पर यहां बहोत सारे पत्थर दिख रहे हैं।

यहां कुछ फंक्शन हो रहा है बहोत सारी बच्चीया डांस कर रही हैं बहोत सारे परदे लगे हुए हैं बहोत सी बच्चिया--

अह बहुत से लोग बाहर खड़े हुए हैं एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है।

ये फूल लगे हुए हैं बहोत सुंदर डेकोरेशन लग रहा--

ये एक बहुत सुंदर गार्डन है गार्डन के अंदर बहुत--

और दो थाली भी रखी हुई है बहोत बड़ी घंटी भी रखी हुई है।